एक लड़का खड़ा हुआ है जो नीले रंग का और काले रंग का बैग रखा हुआ है। काले रंग के शर्ट पहना हुआ है उपर छथ है सफ़ेद रंग की।

नीले रंग की खुर्ची है टेबल है सफ़ेद रंग की कागज़ है और कॉपी रखी हुई है पेन--

जो सफ़ेद रंग की है गी रोड ग जो कत्ते रंग का एक बाइक खड़ी हुई है खंबे खड़ी जो कत्ते रंग के तार लगे और सफ़ेद नीला आशमान है

सफ़ेद रंग के नीचे फर्श की गयी है। सफ़ेद रंग की एक अंकल साफ़ी रखी हुए है। एक कार्टून रखा जो कत्थे रंग का है।

हरी घास है नीचे की साइड पे अगल बगल पेड़ पौधे हरी पत्तिया सफ़ेद नीला आसमान है गुब्बारे लगे हुए है सामने से एक घर बना हुआ जो पीले रंग के है आदमी खड़े हुए है जो नीले रंग के कपड़े पहने है।